ऐ हमारे इलाका एक टूरिस्ट स्पॉट है इहाँ पर चारों तरफ बड़ा-बड़ा पहाड़ है इहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर सुंदर सा मंदिर भी है।

ऐ हमारे इलाका का एक रेलवे प्लेटफार्म है ऐ प्लेटफार्म बहुत ही बड़ा है इहाँ पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगा रहता है।

किया जाता है | यहाँ पर दस लोग काम करता है इस सैलून का एक यूनिफार्म

डांडिया से घेरा गया है और डांडिया के बाहर ढेर सारे लोग यहाँ पर इकट्टे हुए हैं और इस --

इ हमारा इलाका का एक बस स्टैंड है। यह बस स्टैंड बहुत ही बड़ा है। यहां पर हर एक रूट का बस स्टैंड रहता है। इलाका का लोग इस बस स्टैंड से --

यहा पर बीस लोग काम करता है यहाँ का चीफ बहुत ही टेस्टी खाना बनता है |

ऐ हमारे इलाके का एक सड़क है इहाँ पर सड़क के किनारे ढेर सारे बड़े-बड़े बिल्डिंग है ऑफिस है दुकाने हैं इहाँ पर हर वक्त --

और चारो तरफ फूल खिलें हैं। यहाँ पर हजारो लोगो की भीड़ है इस गार्डन क अंदर एक सुन्दर सा स्विमिंग पूल भी है।

ये हमारे इलाके का एक बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड बोहोत ही बड़ा है। यहाँ पर हर रूट का बस खड़ा रहता है। इलाका का लोग इस बस स्टैंड से बस पकड़ कर जाते है।

ये हमारे इलाका का एक बौद्ध मंदिर है ये मंदिर जादा बड़ा नहीं है इस मंदिर का वाल का डेकोरेशन बहुत ही ख़ूबसूरत है।

सुंदर सा गार्डन भी बनाया गया है यहां पर नेशनल फ्लैग उड़ता है इस सड़क में हर वक्त बस ऑटो टैक्सी आता-जाता है।

वैटर्स लोग बहुत अच्छे से खाने को सर्व करता है इस --